और उस पानी के पीछे देखें तो बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं इधर एक दीवार बनी हुई है।

रूम के अंदर सफेद कलर किया हुआ है और यहां पर बहोत सारे सेम कलर के--

इस फोटो के अन्दर सामने बहोत बड़ी स्कूल बनी हुई है।